गहने बहुत ही सुंदर शानदार लग रहे हैं।

यहां एक पिंजरे में बंद कुछ तोते--

परंतु वहे झूला कुछ टूटा हुआ दिखाई दे रहा है।